ये जेन्ट्स ब्यूटी पार्लर है।

यह नया ज़िम खुला हुआ है इसमें पंखा ओंखा लगा है | इसमें बेलून भी लगा है|

पार्क के बीचो बीच एक किला है बहुत ही पुराना किला है और किला के साइड में बहुत ही अच्छा-अच्छा फूल का पेड़ लगा हुआ है आप देख सकते हैं घास भी बहुत अच्छा से जमा है।

यह एक हरिण है इसके शरीर में लाल-लाल केस है।

बच्चे भी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं बच्चे बहुत ही खुश हैं।